टेबल पर प्लास्टिक का मगा दैनिक दिनचर्या के लिए कैलेंडर और उनके बराबर में कुछ मेडिसिंस और डब्बे रखे हैं।

यह एक शुद्ध वैश्णवी ढाबा है।

यह एक एयर लिक्विड फैक्ट्री का एक कोना है।

और इसके पास एक जन सेवा केंद्र भी है।

मकान के सामने एक चौकीदार भी है एक आदमी बाइक से जा रहा है।

यह एक परचून की दुकान है।

यह एक सुंदर बगीचे में रखी हुई रैंक है।

यह एक टेंट रूम का एक स्थान है।

और इसमें लाल कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं।

इसमें लकड़ी की कुर्सियां टेबल और लकड़ी की बाउंड्री है।

सामने एक सरकारी नल नल के नीचे कुछ ईंटे और गेट के बराबर में पानी की टंकी भी लगी हुई है।

यह एक बेडरूम है जिसमें एक सुंदर बेड है।